जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे एक बैंक है बैंक में आप देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं हमें यहां पे एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे मैरिज हॉल है आप खुद यहां देख सकते हैं यहां पे शादी चल रही है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे एसबीआई बैंक है बैंक आप देख सकते हैं काफी बड़ा सारा है।

और काफी अच्छी जगह है ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है आसपास हम देख पा रहे हैं पौधों में लाइटिंग लगी हुई है जो काफी प्यारी लग रही है।

लिफ्ट आप देख सकते दो हैं काफी सुथरा यह चौक है यहां का और आसपास कुछ रूम बने हुए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फैसिलिटी है यहां की।

और बहोत सारे है ये आस पास कुछ यहां पे पेड़ हम देख पा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे पौधे हैं काफी अच्छी जगह है बकरियों के लिए --

रशीता भारती पब्लिक स्कूल है काफी अच्छे स्कूल है आप खुद यहां देख सकते हैं और यहां पे आप देख सकते स्टूडेंट अलग अलग --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

वॉटर पार्क में आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में यहां पर काफी अच्छी सुंदर सुंदर स्लाइड से --

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे बहोत सारी सब्जियां हमें दिखाई दे रही है जैसे गोभी बैंगन आलू मटर टमाटर आप खुद देख सकते हैं।

एक अंकल यहां खड़े है एक बच्चा भी है और काफी अच्छी यहां पे देख लीजिए घूमने की जगह है बहोत ही प्यारी है।

और काफी अच्छी हरियाली है यहां पे एक खड्डे में यहां पे पानी भरा हुआ है।

यहां आप देख सकते हैं यहां पे एक खाली मैदान है मैदान काफी बड़ा सारा है और यहां पे कुछ बच्चे देख सकते हैं खेल रहे हैं।

यहां आप देख पा रहे हैं सुबोध पब्लिक स्कूल यहां पे स्कूल आप देख सकते हैं काफी बड़ी सारी है।

भैया आप देख पा रहे हैं सामने की ओर देख रहे हैं आस-पास कुछ हरियाली हैं बहोत ही अच्छा लुक हैं यहां का आप खुद यहां देख सकते हैं।